सामने देवी जी की मूर्ति दिखाई दे रही हैं। यहाँं पर पांच देवी जी दिखाई दे रही हैं। इनके ऊपर कमल बना हुआ है।

टमाटर गाजर और बैँगन रखे हुए हैं और यह दुकान बोरियों की बनी हुई है। सामने एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

आस-पास बहुत से लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं दो खड़े होके पाठ कर रहे हैं और आस-पास में मोमबत्तीयां जल रही हैं साथ ही इनने सैम कपड़े पहने हुए हैं।

ये एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जो पीले और हरे कलर का है। साथ ही उसमें रेड कलर के बलब भी लगे हुए है।

साथ ही बहोत से लोग आते जाते हुए नजर आर है और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा --